ये राशन का दुकान है जो जमींदारजमींदार चावल का बोरा और ढेर सारी लाइट लगी हुई है पंखा भी है और यहाँ पर बिस्कुट भी रखे हुए है ।

ये एक राशन का दुकान है जो सब लोग तीन चार लोग राशन लेने गए हैं और बगल में कुछ अ धान गेहूँ का अथी चावल का बोरा है और और दुकानदार बैठा हुए है दुकान पे ।

यह कुमार सुरेन्द्र सिंह स्टेडियम गीधर आल इंडिया गुलाउरावत उ मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट गीधर का स्टेडियम है ।